और यह मंदिर के आगे एक लोहे का गेट भी बना है जहां पर कुछ--

वहां टेबल पर सफेद रंग की प्लेट्स और ग्लास रखे हुए हैं जो की कांच के दिख रहे हैं।

यह एक जिम का दृश्य है यहां पर एक आदमी ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहा है बाजू में बहोत से--